ये एक सरकारी बिल्डिंग है। इसमें कर्मचारी काम करते हुए दिखाते हैं और पोस्टर भी लगा हुआ है।

ये एक फैक्ट्री है यहां पे कूड़े वगैरा की सप्लाई होती है।

बिल्डिंग देखने में बहोत बड़ी है कुछ लोग ऊपर है कुछ लोग नीचे--

नीचे फर्श पड़ी हुई है आगे शटर लगा हुआ है और एक पोस्टर टंगा हुआ है।

और इस और यहां पर दो तीन कार खड़ी हुई हैं कुछ कार अंदर खड़ी हुई हैं।

और कुछ कार बाहर खड़ी हुई हैं और नीचे फर्श पड़ी हुई है जो डमरू वाली ईंटें है उनकी पड़ी हुई है।

और यहां पे बहोत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऊपर फूलों से दुकानें सजी हुई है।

एक नांव में पानी भरा हुआ है और एक नाव बिल्कुल खाली है इसके उधर बहोत सारे गेहूं भरे हुए हैं।

ये हेयर कट करने वाली दुकान है यहां पे हेयर वगैरा काटे जाते हैं।

चॉकलेट कैंडी वगैरा भी मिलती है यहां पे कुछ छोटे केक रखे हुए हैं कुछ बड़े केक रखे हुए हैं।

यहाँ पे बहुत सारे घर वगैरह बने हुए हैं जो नीचे की ओर दिखाते हैं।

ये गेस्ट हाउस है देखने में बहोत बड़ा बहोत ही अच्छा लग रहा है।

इसके बीच में बहोत सा चकोर बना हुआ है और इसमें लाइटें वगैरा जल रही है।

कुछ एंगल लगे हुए हैं जिन पे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पे फिसलने वाला भी बना हुआ है।

इनमें कुछ गमले में केले के पेड़ लगे हुए हैं और एक दो पेड़ों पर लगा हुआ है।

एक बड़ा सा मंदिर छोटा सा बना हुआ है उसमें तुलसा लगी हुई है और--

यह एक जून एक जिम जाने वाला स्टोर रूम है इसमें बोहोत सारी मशीनें वगैरा रखी हुई हैं।

पोस्टर लगा हुआ है और नीचे दुकाने खुली हुई हैं और ऊपर घर बना हुआ है।

ये एक परचून की दुकान है यहां पे परचून का सामान मिलता है यहां पे मैगी गरम मसाला मिर्च धनिया वैसे ये सब चीजे टंगी हुई हैं।

ये एक पहाड़ है पहाड़ के ऊपर से पानी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

और ऊपर टीन पड़ी हुई है और बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर से तार पड़ा हुआ है।

बहुत सारे लोग एक ही कलर के ड्रेस पहने हुए हैं यहां पे नीचे बहुत बड़ी फर्श पड़ी हुई है।